यहां पे लाइट भी दिखाई दे रही कुछ सर्किट लाइट भी दिखाई दे रही यहाँ पे बहुत सारे फूल की मालाए भी दिखाई यहां पे बिल्डिंग दिखाई दे रही है ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।